और उसके बगल में भी लगातार झूला है। यह आदमी टिकट भी खरीद रहा है। उधर तीन चार बच्चे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे झूला झूलना बहोत पसंद है यार।

ना ये कोचिंग है ना ये स्कूल है। ये आईथिंक अ कंपनी है। जहाँ पर किसी चीज पर वर्क हो रहा है और उसमे बहुत सारे स्टाफ बैठ के वर्क कर रहे हैं।

हेलो गाईज आप लोग देख सकते है की नीचे एक स्टेट बैंक का ए.टी.एम. हैं ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। वेस्टीज डीएलसीपी बुडाऊं।

हेल्लो गाइस आप लोग देख सकते है कि सामने एक बड़ा सा किला है। जिसे आप किला भी कह सकते हैं। खंडहर भी कह सकते हैं।

हैलो गाइस आप लोग़ देख रहे हैं। यहां पर एक रेस्टोरेंट है। जिसका डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत किया गया है ऐसा लग रहा है देखने मे की --

हैलो गाईज आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी सी चौड़ी मैदान हैं और मतलब आप देखिये तो चारो तरफ ये तो साइड सब प्लेन है उधर साइड देखिए चारो तरफ हरियाली है --

हैलो गाइस आप लोग देख रहै हैं यह जो एच.डी.एफ.सी. बैंक है जिसका ब्रांच ओपन है यहां --

अब ये तो पता नही की यह मस्जिद है कि क्या है लेकिन देखने मे तो मस्जिद लग रहा है और इसका कलर ब्राउन कलर का है। लेकिन इसमे जो बीच मे व्हाइट कलर की जो डिजाइन की गयी है --

हेलो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि सामने या तो कॉलेज है या तो कोई इंस्टिट्यूट है। जिसका पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि इधर साइड --